एक मकान दिखाई दे रहा है मकान में ऐसे का पेंट हो रा है उसमें खिड़ --

और एक और माकन दिखाई दे रहा है उसके दिखाई दे रहा है सफ़ेद-सफ़ेद सा।

दिखाई दे रहा है एक जेंट्स भी आ रहा है एक बाइक भी खड़ी हुई है पैदल भी दिखाई दे रहा है।

ये बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग में सफ़ेद कलर का पेंट हो रहा है बोहोत स --

एक मक एक मकान है मकान चद्दर शेड से बना हुआ है उसमें एक दुकान खुली हुई है।

एक मैदान है मैदान में बहुत सारे जेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं और सुंदर दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं हैं |

लगा हुआ एक मकान भी दिखाई दे रहा है | मकान में सफ़ेद कलर का पेंट हो रहा है | एक गेट भी लगा हुआ है बादल भी दिखाई दे रहा है सफ़ेद-सफ़ेद |

एक मकान दिखाई दे रहा है मकान में सफेद कलर का पेंट हो रहा है ऊपर में खिड़की वगैरा लगी हुइ है टाइप का पड़ा हुआ है।